और यहां सभी प्रतियोगी परीक्षाओ की पुस्तकें हैं जो उचित रेट पे मिलती हैं। --

यह एक इंडिया पोस्ट ए.टी.एम. है जोकि चोबीसों घण्टे खुला रहता है।

ए.टी.एम का दरवाजा खुला हुआ है उस पर एक सटल भी चढ़ा हुआ है उसके पीछे काफी सारे पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं। एक पेड़ के नीचे है।

येह एहसानमंद लगता है की एक पार्क में लगा हुआ है।